और ये एक फिटनेस जिम का फर्स्ट इयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है।

यहां पे काफी लोग खड़े हैं बगल में एच_डी_एफ_सी का ए_टी_एम है जहां एक गार्ड बंदूक के साथ खड़ा है।

ये कोई पर्दों की दुकान है।

इसका नाम तो हमें नहीं पता।

इसके के बगल में क्रीम बिस्किट लगाया गया है ऊपर चॉकलेट।

ट्रेडमिल रखी हुई है। साथ में एक डीप्स घिचने की मशीन रखी हुई है। एक बहोत बड़ी बाल रखी हुई है। उस बाल पे एक व्यक्ति पैर रख कर डीप्स मार रहा है।

और कुछ चमेली के फूल की माला है जिसके बीच में गुलाब का फूल भी लगा हुआ है गेंदे के फूल की माला हम मंदिरों में प्रयोग करते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए और --